यह एक टी शॉप है और शॉप के अंदर काफी सारे चिप्स वैगरह टांगे हुए हैं।

सामने एक चेयर है सफाई चल रहा है एक आदमी झुका हुआ है दोनों तरफ पर्दा लटका --